अम्म दुकान में एल.डी. एल.सी.डी. लगी हुई है।

ए यहाँ टेबल पर ग्लासेज रखी हुई है। टिश्यू पेपर टिश्यू होल्डर के साथ --

इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लड़कियाँ साड़ी पहनी हुई है लड़के कुर्ते पैजामा पहने हुए हैं।

पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी का डेकोरेशन किया हुआ है क्योंकि बैलून्स लाल --

ये तीर एक ऑटो रिक्शा की है।

ट्रैन क्रॉस हो रही है। रैलवे ट्रैक पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं। एक जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है पीछे की तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तारे दिखाई दे रही हैं।